यह एक ग्रोसरी की दुकान का फोटो है।

नीचे टूट पेस्ट रखा हुआ है।

फैक्ट्री में बड़े बड़े टनल दिख रहे है।

जोकि काले रंग का है।

सामने एक ब्राउन कलर का दरवाजा है।

सामने में कुछ लोग है जो की जा रहे है।

यह एक किराना दुकान का फोटो है।

पीछे में भी कुछ बच्चों के पाउडर क्रीम भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में खुला आसमान है क्रीम कलर का बड़ा बड़ा पुराना बिल्डिंग दिख रहा है।

दोनों तरफ बिल्डिंग है।

बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़की भी है।

बाहर रोड पर एक कुत्ता है।

यहां में एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है।

ऊपर मे काला आसमान है।

इस फोटो में ऊपर में खुला आसमान है जिसमें बादल हैं।

पीछे बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है।

ये बहोत ऊंचाई से नीचे का फोटो है।

खुला आसमान है कोहरा है।

पानी बोटल तथा और भी खाने के समान दिख रहे हैं।

यह एक इंसान का फोटो है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा--

एक ब्लू कलर का शटर भी है जिसके अंदर काला कांच है।

यहां पे तीन नाव हैं।

एक नाव के ऊपर एक इंसान खड़ा है जिसने लाल कलर का शर्ट और लाल कलर का टोपी पहना है।

ये गाड़ी के बोनट का फोटो है।

किनारे में एक सफेद बड़ी सी कार है।

एक ब्लू और वाइट कलर का बड़ा सा बिल्डिंग है।

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां है जिसमें ए_सी लगा हुआ है।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

यह एक श्रृंगार स्टोर का फोटो है।

मेकअप का बहोत सारा सामान है।

यहां पे एक आईना भी है।

दो लड़की और कुछ लोग बाइक से और एक सफेद कार दिख रही है।

यह एक लैब जाँच का फोटो है जहां कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग बैठे है।

यहां पे बहोत सारा कॉफी मग है।